यहां पर झरना है उधर से पा इधर से पानी उधर जा रहा है।

ए काला ज काला ई अंगूर है बहोत सुंदर लग रहा --

यहाँ पर फल पे बेच रहा है यहाँ पर बेचने वाला नहीं जना रहा है।

ब शीशा में लगा हुआ है बंदूक बहुत सुंदर बंदूक लग --

ये यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर ये यहाँ पर पेड़ पौ छोटा-छोटा पेड़ है बड़ा-बड़ा पेड़ है और यहाँ--

क्योंकि इसमें कोई हेर नहीं सकता इस पर बहुत सुंदर लग रहा है।

और इस कुर सीढ़ी है चलता है और यहाँ पर भी सीढ़ी है और यहाँ पर पेड़ है यहाँ ----

कितना सुंदर है नीला-नीला और यहां पर यहाँ पर हरा-हरा घांस है। ए बोहोत सुंदर है।

और यहां पर ले कलर कलर का दवाई रेहता हो।

बहुत सुंदर लग रहा है और यहां पर --

यहाँ पर यहाँ पर दुकान है यहाँ पर हॉर्लिक्स है च्यवनप्राश है और यहाँ पर बॉर्न्विटा हैं और यहाँ पे --

व्यक्ति पूजा कर रहा है और सूरज भगवान को अर्घ दे रहा है ये और यहाँ पर --